यहाँ पे सरस्वती माता जी का फोटो है जो कि काफी फूल फाल चढ़ाया है यहाँ पे पूजा पाठ होता है।

यहाँ पे काफी अच्छा सोना -चांदी का मूर्ति है सुनार का दुकान व काफी खूबसूरत यहाँ पर सजाया गया हैं।

देख लीजिए रखा हुआ है काफी खूबसूरत लग रहा है गजरा भी रखा है यहाँ पर शकरकंद और बाकी भिंड़ी- सिंडी जो भी है का -का है अनेको प्रकार के सब्जी है क्या --